सामने हमे एक किताब दिखाई दे रही है रखी हुई है जिसमे चाइना मेड एंड आउट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। एक पोस्टर बना हुआ है आदमी--

देखिये यहाँ पर रिक्शा खड़ा हुआ है गाडी खडी हुई है बोहोत सारे लोग आ रहे जा रहे। एक आदमी के हाथ में छाता है।

और डिज़ाइन बने हुए दिखाई दे रहेहै। किनारे अँधेरा दिखाई दे रहा है। वो लड़का बोहोत ध्यान से--

और किनारे दरवाजा दिखाई दे रहा है शायद ये कुछ एक्स रा की मशीन की तरह लग रहा है।

उनकी तस्वीर भी दिखाई दे रही है और बहुत सारे लोगो की भी तस्वीरे दिखाई दे रही है। रोशनी दिखाई दे रही है।

कुछ औरते है आदमी है बच्चे है और किनारे एक पंडाल की तरह लगा हुआ दिखाई दे रहा है। एक बिल्डिंग भी--